इस तस्वीर के अंदर हमें जियानी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नाम लिखा है ऊपर प्रगति बुक सेंटर।

लाइटें लगी हुई है और बहुत सारे आदमी हमें--

अ ये बिल्डिंगो के बड़े छोटे ब्लॉक्स बनाकर अ नक्शे में दिखाए गए हैं।

एक कार हमें ये अंदर से दिखाई दे रही है जिसमें स्टेयरिंग --

बिल्डिंग के बाहर हमें कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस तस्वीर के अंदर नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस तस्वीर के अंदर एक प्रिंटेड कारपेट बिछा हुआ है।

और जिसके ऊपर फूल माला जाई गई --

मंदिर दिखाई दे रहा है हमें और मां कामाख्या देवालय में--

और बहुत अच्छा मॉडल बड़ा सा ये बना है।

इस तस्वीर के अंदर हमें एक लाल और सफेद मछली डब्बे पर रखी दिखाई दे रही है।

हमें दिखाई दे रही है जिम की मशीन है।

हमें सड़क दिखाई दे रही है सुनि सुनसान है और हमें हरा पेड़ लगा नजर आ रहा है।

हमें तस्वीर के अंदर एक वाइट बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है सामने बड़ा--

एक बड़ी सी दुकान है कपड़ों की और कांच लगे हुए हैं।

और सफेद हमें खंबे लगे हुए तार हमें नजर आ रहे हैं।

और पौधे भी आगे हमें लगे दिखाई दे रहे हैं मूर्तियों के पास--

और झंडे के पास तिरंगा झंडा लहरा रहा है।

एक सफेद दीवार है और उसकी अलमारी में रखे हुए हमें --

और इसके ऊपर भी ऑफिसर्स क्लब लिखा हुआ है।

और एक जगह बक्से रखे हुए हैं एक पर एक--

और हमें ये एक जगह रखे हुए दिखाई दे रहे हैं मिट्टी--

फूली फूल लगे हुए हैं इसमें और स्टेज पर सोफे रखे हैं दो।

हमें एक किले का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है अंदर का ये गार्डन एरिया है और गार्डन एरिया में हमें लोग चलते फिरते --

और एक लाल रंग की बाइक खड़ी हुई है।

बना हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड लगे हुए हैं।